ये बहुत सारे रोज है और ये रेड कलर का रोज है बहुत प्यारा लग रहा है और यहाँ पर ग्रीन्स भी कलर के है और यहाँ पीछे साइड भी बहुत अच्छा बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है।

एक जिम की क्लास है यहाँ पर एक भईया हैं जो जिम कर रहें हैं। बॉडी बिल्डर वाले हैं वे और इनने वाइट कलर की शर्ट पहने और कत्थाई से कलर का लोवर पहने उनके बाजू वाले भईया भी खड़े हैं।

ये एक बस खड़ी है। जो ब्लू कलर की ऐंड वाइट कलर की है और यहाँ पर एक भैया खड़े हुएँ हैं। जिनने ग्रीन सी कलर की शर्ट पहनी है एंड ग्रे से कलर का लोवर पहनी है और यहां पर --